यहाँ जंगल जैसे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे हैं और नीचे में कुछ घासे भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ सामने में एक फील्ड दिखाई दे रहा है जिसमें घासें दिखाई दे रहा है हरा-हरा।

और पीछे में एक करकट जैसा दिखाई दे रहा है।

खाली-खाली जगह भी दिखाई दे रहा है। पत्थर के पीछे उसके पोधे भी दिखाई दे रहा है। न्यू न्यू तरह --

दिखाई दे रहा है यहाँ पे और कुछ ग्रिल्स जैसे दिखाई दे रहा है आगे में ब्लैक ब्लैक सा --